इस इमेज में देखो सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर देखो अंदर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर कुछ मछुआरे बैठे दिखाई दे रहे हैं उनके पास में ढेर सारी मछलियां रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है यहां पर देखिएगा ऊपर कुछ लोग खड़े हैं और एक कार भी नजर आ रही है।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

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर देखियेगा ढेर सारा सामान है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहाँ पर देखिएगा दुकान दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर देखिएगा एक चाय वाला भी नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक सामुदायिक केंद्र दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा आसपास दो बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है सामने यहां पर दिखेगा एक बड़ा सा पर्वत भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक महादेव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और गेट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा नज़र आ रहा है।

इस इमेज मे सामने यहां पर एक सामुदायिक केंद्र दिखाई दे रहा है बाहर यहां पे देखो कुछ लोग घूमते नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और गेट के पास में कुछ पेड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर कुछ अ तोप दिखाई दे रही है रखी हुई और यहां पर देखिएगा बड़े बड़े टायर्स भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है नीचे देखिएगा यहां पर लाइन से को दो तीन कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा बड़ा सा फ्रिज और ऊपर एक बॉटल रखी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर एक लड़की बालों में पीनअप लगा के बैठी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक ढाबा दिखाई दे रहा है और नीचे देखिएगा यहां पर कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में दिखेगा सामने यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर दिखेगा बालकनी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर यहां पर एक स्पीड पेट्रोल डीजल लिखा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कुछ मकान के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं और यहां पर गमलों में पेड़ पौधे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और यहां पर साइड में एक ग्रीन कलर की बेंच भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा ग्रेट दिखाई दे रहा है और ऊपर पीटल्स प्राइड नर्सरी लिखा हुआ नजरआ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कई सारे छोटे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर सौ प्लांट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है बाहर देखिएगा बैठने की बेंचेस और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है अंदर एक लड़की खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर लाइन से कई सारे बैट बॉल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर टोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक लड़का अह नजर आ रहा है जो लैपटॉप पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।